अपनी बॉडी बनाने आते हैं ताकि वो एक अच्छी बॉडी रख सके और स्वस्थ और तंदुरस्त दिख सके। यह एक व्यायाम करने की अच्छ --

स्टेशन के नीचे कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पे इंसान ठेहेर सकता है या तो रुक सकता है। अच्छा है तो वो अपनी बात वहाँ पे केह सक --

कुछ लोग खड़े हुए है। यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं। जहाँ से हरियाली है और पास ही में एक समुद्र है। समुद्र के होने के कारण ये जगह बोहोत ही ज्यादा प्यारी दिख रही है।

तो जैसा कि आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर बहोत ही सारी छुरछुरी रखी हुई हैं। छुरछुरियों का मतलब होता है कि जो हम दिवाली पे छोटे बच्चे जलाते हैं।

तो जैसा की आप ये फोटो में देख रहे हैं। यह एक व्यायाम शाला है। जहाँ पर छोटे छोटे इत्यादि बड़े से बुजुर्ग बच्चों को भी --

की समक्ष एक बहोत ही खूबसूरत सा बगीचा है जो रास्ते के तौर पे आने-जाने के लिए बनाया गया है।

यहाँ सामने की ओर बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ हैं और यह ऊंचाई के स्थल पर है। यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी है। यह नजारा देखने में बोहोत ही ज्यादा सुकून भरा है।

तो जैसा कि आप यह फोटो में देख रहे हैं यहाँ पर बोहोत सारी औरतें और कुछ पुरुष एक साथ खड़े हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे या तो ये कोई अस्पताल है या तो कोई बँक है।

तो जैसा कि हम यहाँ फोटो में देख पा रहे है यहाँ पर कुछ कारे खड़ी हुई है और उनमे से एक दो कारो पूरी तरीके से बिगड गई है ऐसा लगता है जैसे --

सारा पानी वर्षा के रूप में नीचे गिर गया है जिसके कारण बोहोत सारा पानी बर्बाद हो गया है और ये बात बोहोत ही ख़राब बात है।

जैसा कि हम यह फोटो में देख पा रहे हैं कि यह एक तीन लड़के हैं जो कि ऐना के सामने आकर --

जैसा कि हम यह फोटो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो अंकल और एक कार है। यह कार बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाने की वजह से ये दोनों जान --

मिलकर साफ कर रहे है ये अंकल बाल्टी में पानी लेकर हातों मे कपड़ा लेकर इस गाड़ी को धो रहे है ताकि ये गाड़ी पूर्ण तरीके से साफ हो जाये।

डेली दैनिक जीवन में और ये अंकल हार-फूल के साथ-साथ गुलाब व अलग तरीके से चीजे भेजते हैं।

तो जैसा की हम यह फोटो में हम देख पा रहे हैं की। यह एक बुक बहोत बड़ी दुकान है। जिसके नीचे बहोत सारी बाइक खड़ी है और वो अपनी बुक को बेच रहे है।